और यह बस स्टैंड काफी बड़ा है यहाँ पे बहुत सारी बसे लगी हुई है।

लोग यहाँ से बसो में सफर करते हैं।

धीमा जानवर होता है बहुत सुस्त जानवर होता है।

बिजली दी जाती है हमलोगों के घर तक बिजली पहुचाई जाती है।

यहाँ पे बच्चे पढाई करने आते है। यहाँ पे उच्च स्तर की पढाई होती है।

यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे शिक्षक हैं।

दुकान में हम खाने की सामाने खरीद सकते है यहाँ से हम --

पूजा करने के सामान खरीद सकते है और --

डैम है और डैम में लोग घुमने जाते है।

काफी बड़ी है यहाँ पे कोई समारोह का आयोजन किया गया है।

यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों के दूकान हैं यहाँ पे लोग आते हैं।

पौधे लगाये गए हैं बहुत सारे फूल के पौधे हैं और --

और यहाँ पे एक लाईटो की गेट बनाई गई है और बहुत सारे लाइट लगाये गए है फूल --

यहाँ पे फिनाएले रखी हुई है घर धोने के सामन रखे हुए है और तरह-तरह के सामान रखे हुए है।

यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है हर मोड़ पे सिर्फ बैंकिंग ही बैंकिंग ।